और लाल मिट्टी दिख री है और हरे पेड़ भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरस नजर आ रहे हैं और आसमान भी जो है साफ दिख रहा है।

और वहाँ पर बास्केट की टोकरी दिख रही है वहीं काफी पोल्स वहाँ नजर आ रहे हैं और बाइक्स दिख रहे हैं और वहाँ जो दीवार है वो सफेद रंग का दिख रहा है गेट दिख रहा है।

वहां पर ग्राउंड में काफी अच्छी तरह से वातावरण दिख रहा है और काफी रेती की जो मिट्टी होती है| वो दिख रही है|

और काफी लोग उपर में दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर एक कार नजर आ रही है जो व्हाइट कलर की दिख रही है और एक जो बिल्डिंग है वो दिख रही है जो क्रीम कलर --

कुछ नेट प्रैक्टिस दिख रही है नेट का जो गोल है वो दिख रहा है और काफी हरे पेड़ वहा दिखाई पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक टावरस है पूल्स है और पानी की टंकी भी दूर पे दिखाई दे रही है।

काफी बड़ा ग्राउंड दिखाई पड रहा है जहा पर काफी हरी घास नजर आ रही है और नेट का जो गोल का होता है वो दिखाई पड़ रहा है और रनिंग ट्रैक वहा पर दिखाई दे रहा है काफी लोग खड़े दिख रहै है कुछ बैठे दिख रहे है फ्लड लाइट्स दिख रहे है।

और आसमान भी जो हैं वो साफ नजर आ रहा हैं। लाल मिट्टी दिख रही हैं और पुल वहा पर एक नजर आ रहा हैं और काफी अच्छा ये नजारा --

और कुछ शॉपिंग प्लेस यहाँ पे दिखाई दे रहें हैं। मार्केट का एरिया नज़र आ रहा है | इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रहें हैं | वही पर हरे पेड़ भी काफी नज़र आ रहें हैं।

एक नदी का डेम दिखाई दे रहा है जिसका दरवाजे जो है वो बंद नजर आ रहे है और पानी का जो बहाव है वो नही दिख रहा है वहां पर। काफी ज्यादा हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरी घास नजर आ रही है।